इसके पार एक गमला भी है हरा हरा।

यहां एसीस की लाइट है और वह सफाई भी है।

यहां पर लेंटर और सिमट गिर रही है यह बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

यहां काफी बड़े बड़े फ्लैट हैं।

यहां बाहर छोटे छोटे हिरन और शेर का फोटो लगा है।

पास ईंटों का भट्टा है।

यहां पर एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में--

यहां पर बहोत बड़ा ऑफिस है।

यहां के पारक और पेड़ पौधे काफी सुंदर है।

इसमें बहुत सारे कमरे हैं।

फ्लैट है बोहोत सारे पेड़ है।

यहा एक फैक्ट्री है यहां पर--

सभी लोग ध्यान पूर्वक हाथ जोड़ के बैठे हैं।

यहां पर बहोत बड़ा पारक है इसमें हरी हरी घास है।